में तस्वीर के अंदर सड़क बनी हुई नजर आ रही है जिस पर--

एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है और गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं।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

और ये गन्ने पूजा हो रही है गन्ने रखे हुए हैं और हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं।

तस्वीर के अंदर हमें एक लड़की खड़ी हुई नजर आ रही है जो --

आह महिलाओं की वस्त्र की दुकान है आ कपड़ो के आह्ह दुकान है और जिसमें कुर्सिया रखी है।

और हमें सफेद और पीली लाल बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है दूर।

और आगे भी इसके हमें तीन आटो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके पास--

हमें तस्वीर के अंदर एक कार खुली हुई दिखाई दे रही है जिसका बोनट खुला है।

हमें एक झरना पानी का बेहता हुआ सफेद पानी--

झन्ने में बहता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल एकदम वाइट है पत्थरों के बीच में से--

एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई है और उसका नंबर हमें दिखाई दे रहा है।

का हमें बोनट खुला हुआ नजर आ रहा है।

और भी कारें साइड में हमें खड़ी हुई नजर आ रही है।

और दूर हमें आसमान से सफेद दिखाई दे रहा हैं।

कलर लाल कलर का हो हुआ है जिस पर वो रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक हरा भरा मैदान हमें दिखाई दे रहा है।

रखे हुए हैं चार डमी --

हमें हरे पीले पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहे हैं पानी की टंकी दूर बनी नजर आ रही है।

और हमें और भी चीज़ें इसमें रखी हुई नजर आ रहीं हैं।

आदमी हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं ये गाड़ी के पास एक डस डस्टबिन रखा हुआ है।

और हमें हरे-हरे और पेड़ रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और पार्क का हमें गेट दिखाई दे रहा है नीले रंग का और इसका बोर्ड हमें लगा दिखाई दे रहा है।

और लाल पीले सफेद नीले बैलून हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें लाइट से सजा हुआ ये एक जगह दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर के अंदर हमें एक एक बड़ी पिक्चर --

एक आदमी बनियान पहना हुआ बैठा हुआ है सफेद।

और ब्लैक रंग की ये एक्सरसाइज मशीन है।